वहीं एक मंदिर से दूसरी मंदिर की ओर एक वायर्स जाती दिख रही है।

बिल्डिंग के आगे ग्रीन कपड़े से ढका गया है।

ये एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा--

पाउचेज टंगे हुए हैं वेफर्स वगैरा--

यहां पे बहोत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा--

जिसके गेट पे लिखा है एस_पी ।

यह एक जिम का हॉल दिखाई दे रहा है।

ये एक कार सर्विसिंग स्टेशन है।

वहां कुछ खेलने के झूले साइज बने हैं।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है।

ये एक घर का पिक्चर दिख रहा--

वॉलपेपर हॉल में लगाया गया हुआ है।

ऊपर पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

ये एक फैक्ट्री दिखाई दे रही--

पेड़ के पास में एक येलो कलर की जीप खड़ी हुई है।

इस ट्रक पे लिखा हुआ है गुरु कृपा--

साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये एक कंस्ट्रक्शन साइड दिख रही है।

जहां पे छत पे स्लैब डाला जा--

साइड में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी हुई है।

वहीं पे सीढ़ीयों से कुछ लोग किले में चढ़ रहे--

ये एक मकान दिखाई दे रहा है मकान पे लिखा है श्री महाशय जी निवास --